यहां पर बहोत सारी कार पार्किंग में खड़ी हुई हैं और अलग अलग कलर की कार है और यह पूरा पार्किंग शेड बना हुआ--

अंदर स्कूल पूरा सफेद कलर से पेन्ट है और सामने की तरफ कुछ बोर्ड नोटिस ल--

यहाँ पर एक कपड़े कि दुकान हैं जहाँ पर बहुत सारे कपड़ो को हैंगर में लटकाया गया है और कुछ डमी में भी कपडे पहनाए गये --

कुछ चेयर लगी हुई है बहुत सारे लोग अंदर की तरफ कपड़े देख रहे हैं अंदर भी चेयर लगी हुई--

पीछे की तरफ बहोत सारी शॉप है वहां से बहोत सारे लोग आ जा रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी शॉप बनी हुई है और यहां पर गुरुकुल करियर के नाम से कोई कोचिंग क्लासेस भी है जिसमें--

और एक गेट है एक विंडो है सभी बंद है। ये मकान के --

उस शेविंग सैलून में खड़े हुए ही सामने की तरफ मीरर लगा है बड़ा सा और बहोत सारा सामान टेबल पर रखा है।

और पूरे पेड़ जगह जगह पर रुक रुक कर खोदे गए है आस पास में कुछ लाल कलर की मिट्टी के ढेर भी लगे हुए--

और कुछ ही यह बचा हुआ है नीचे की तरफ बीच में कुछ खाली एरिया है यहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

यहां पर एक मोबाइल की शॉप है जिसमें बोहोत सारे मोबाइल रखे हुए हैं अलमारी में बहोत अच्छे तरीके से जमा कर।

तोफे पुरे खाली है और आस पास कुछ रेलिंग एरिया भी बने--